यह एक ब्रिज का सीन है। नीचा मा एक एयरटेल या कोई भी कंपनी का वो जूता पोलीस करने वाला है।

मृगा मार्टस मे कपड़े की दुकान लग रहा है और बोहुत कुछ होगा वो तो हम कह नहीं सकती क्या होगा अंदर देखने के बाद पता चलेगा क्या मगर बाइक आग हुआ है दो बाइक है ।